कंप्युटर रखा हुआ है मॉनिटर रखा हुआ है प्रिंटर --

और यहाँ पे बहोत सारे लोग भी हैं और बहोत सारे औरते हैं और बहोत --

और सामने एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग के नीचे ए_टी_एम की दुकान रखी हुई है।

काउंटर जैसा रखा हुआ हैं जो व्हाइट कलर का है और यहां पे--

बहोत बड़ा है और इस --

और इसके आस-पास बहुत सारे पौधे हैं पेड़ है।

यहां पे लोग जा रहे हैं दो आदमी हैं।

हॉटल के अंदर बहुत सारी लाइटें रखी हुई हैं और नीचे पार्किंग का गेट भी है।

ग्रीन कलर की लाइटें लगाई हुई है ऊपर भी लाइटें बहुत सारी है कुछ लोग भी है वहां पर--

पीछे बहोत सारे लड़कियां है और अलमारी है और बेड का--

और यहां पे बहोत सारी लाइटें भी है कंप्यूटर्स है।

और इस रोड के पीछे बस भी है ऑटो भी है बहुत सारे ।